और सैलेड में खीरा रखा है और प्याज है निम्बू है।

दिखाई दे रही है ऊपर छत्री के आकार की छत बनी हुई है।

और स्लाइड के आसपास बोहोत सारे छोटे - छोटे --

यहाँ पर कुछ लोहे का खाने का बाउल बनाया गया है।

जिस में ये कुछ खा रहे है नीचे लाल मिट्टी है सामने पेड़ है।

यहाँ पर एक पेट्रोल पंप बना है पेट्रोल पंप ऊपर से--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

यहाँ पर एक बड़ी सी झील है और उसमे पानी भरा हुआ है।

पेंट पहना है और यहाँ बेड पर एक पेशेंट है।

नीचे रैक मे बहुत सारा सामान रखा हुआ है एक खिड़की है।

यहाँ पर बोहोत घना जंगल दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक कैफ़े है जिसपे लिखा हुआ है टी चेस कैफ़े --

सामने कुछ सॉस की बोतल दिखाई दे रही है एक बल्ब जल रहा है।

दुकान के कार्नर पे पिक्चर है जिसपे बर्गर और पिज़्ज़ा और कौल्ड्रिंक रखा हैं।